इस तस्वीर में हमको एक आदमी हरे रंग के कपड़े पहना हुआ दिख रहा है--.

अंदर पैसे निकालने की मशीन दिख रही है काँच का दरवाजा दिख रहा है.

कत्थई कलर का है एक हरे रंग का पटला बना हुआ दिख रहा--

एक और पौधा दिख रहा है जिस पर सफेद रंग के फूल दिख रहे हैं.

सफेद रंग में है हरे रंग में है.

एक आदमी हरे रंग के कपड़े पेहना हुआ--

इस तस्वीर में हमें बहोत सारे हिरण दिख रहे हैं.

जिसमें बहोत खूबसूरत से कपड़े लटके हुए हैं.

छत पर काम होता हुआ दिख रहा है मजदूर जमीन पर सिमेंट लगा रहे है.

ए गुब्बारे पीले लाल रंग के हैं।

बाहर में एक सफेद रंग के कपड़े पहना हुआ लड़का खड़ा हुआ है.

दीवार पर लाल रंग किया हुआ है ।

दीवार पर सफेद रंग का बल्ब जलता हुआ दिख रहा है।

बहोत सारी खिड़कियां बनी हुई हैं ।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

गाड़ी पर दो बच्चे एक औरत एक आदमी बैठा हुआ दिख रहा है।

बड़े से खजूर के पेड़ लगे हुए हैं।

पीछे कांच की खिड़कियां बंधी हुई हैं।

जिस पर लड़कियां खड़ी हुई हैं।

लकड़ी की एक टेबल बनी हुई है।

मिट्टी के गिलास रखे हुए हैं।

जहां पर दो पेड़ लगे हुए हैं।

मिट्टी की जमीन दिख रही है।

कुछ लोग खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं।

जिस पर लोग खड़े हुए हैं।

लोहे की सेन्टिंग बांध रहे है।

तीन आदमी काम करते हुए दिख रहे हैं।

बहुत सी औरतें रंग बिरंगे कपड़े पहनी हुई।

ये बगीचा बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है।